यह एक रेस्टोरेंट की पिक्चर है।

यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रही है यह घर के अंदर की पिक्चर है यह घर पूरी तरह खाली है।

यहां पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है।

शॉप के बाहर टेबल और चेयर रखी हुई है।

शॉप के बाहर कुछ बलूंस लगे हुए हैं।

शॉप के दरवाजे पर बड़ा सा कांच लगा हुआ है।

यहां पर कागज के रंग बिरंगे टुकड़े पड़े हुए हैं।

यहां पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है।

औरतों ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है।

इन्होंने पालथी मारे बैठे हुए हैं इनके सर पर एक मुकुट दिखाई दे रहा है।

यहां पर लकड़ी के बड़े बड़े बांस दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है।

यह एक गेम पार्लर है यहां पर बहुत सारे गेम्स रखे हुए हैं।

यहां पर दो पिलर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इसके बाहर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

घर के ऊपर एक स्वास्तिक और ओम बना हुआ है।

यहां पर लोहे के पिलर लगे हुए हैं।

यहां पर एक पटरी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है।

यहां एक पिक्चर दिखाई दे रही है।